यह एक बिल्डिंग है।

यह एक गार्डन है।

कुछ काम कर रही है पूजन कर--

एक पेड़ भी लगा है।

एक शादी गार्डन है।